छठ-छठ मैया के हो रहा है और गंगा जी है और एक आदमी खड़ा हुआ है --

तार है दो दो गो पोल दो गो तार गया हुआ है पीछे मकान है एक पोस्टर टंगा हुआ पोल के नीचे ऊपर --

लड़की का ये नर्स बैठा हुआ है बुल्लू कलर का एथी हैं कुर्सी है और सब पोस्टर सब सटा हुआ है और कुर्सी सब लगा हुआ है।